सामने भी बहोत सारे फूल लगे हुए हैं। तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं।

आदमी खड़ा है एक आदमी बैठा है।

बहोत सारे सामान हैं मीरट है।

ऊँची-ऊँची डिज़ाइन किया हुआ ईमारत लगी हुई हैं।

निम्बू है पनीर की छोटी सी टिक्की है।